देखने मे बहुत अच्छा मॉल है घूमने मे भी अच्छा लगता है अच्छा कलर भी है इसका आगे गाड़ी बहुत लगा हुआ है।

नीचे बगीचा में हर तरह के फूल लगा हुआ है।

अगल बगल में मकान बहुते बड़ा सा है।